इस तस्वीर में सामने बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। जो कुर्सी के ऊपर बैठकर-अ उनके सामने टेबल है ऊपर लाइट्स लगी है और फैन लगी हुई है।

तस्वीर में सामने एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जो थोड़ा बड़ा है इसमें दो बच्चे नहा रहे हैं

और फूल का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

यह खिलोने हैं यह कुल छह हैं।

साइड में कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो खरीदारी कर रहे है और कुछ लोग जमीन पर रखकर बेच रहे है आस पास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे --

तस्वीर में सामने एक ग्रोसरी -का दुकान नजर आ रहा है जहां बहुत सारी ग्रोसरी के सामान मिल रहे हैं।